ये काफी लड़की अच्छी तैयार हुई लग रही है। ये साड़ी पहने हुए है। बच्ची के हाथ में कुछ तोहफा है। एक लड़की कुर्सी पे बैठी है जो कि सबके साथ में फोटो खींचा रही है।

यहां पर एक लड़की खड़ी हैे। बाकी औरतें बैठी हुई हैैं।

औरत ने लाल कलर की साड़ी पेहन रखी है | एक ने गुलाबी कलर की और काफी औरतो ने भी लाल कलर की पहन रखी है किसी ने क्रीम कलर की पहन रखी है पीछे पानी बोहत गन्दा --

ये एक बेंच पर हाथ रखे हुए हैं और लड़का बरामदे में खड़ा है जो कि बहुत लंबा लड़का है।